इस चित्र में पिलराम करके एक जगह नज़र आ रही हे और काफी सारे हमें--

लड़के ने हरे रंग की टी शर्ट पहनी है।

काफी सारे पेड़ हमें नजर आ रहे हैं।

कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक जमीन दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें इंडिया पोस्ट ऑफिस का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

नीचे कत्थई रंग की चादर बिछाई गई है।

जिसका नाम पीस सेल्फ स्टडी जोन है

इस चित्र में हमें एक साड़ी की दुकान दिखाई दे रही है।